पेड़ पौधे देख रहे हैं| लाइट के खम्भे देख रहे हैं| झंडा दिख रहा है| आसमान दिख रहा है।

पानी दिख रहा है पौधे दिख रहे हैं पत्थर दिख रहा --

पानी दिख रहा है।

आदमी औरत दिख रहे हैं। पेड़-पौधे दिख रहे --

इसमें बोहत सारे आदमी दिख रहे हैं। पेड़ पोधें दिख रहे हैं। आसमान --